व्यायाम करना बहुत ही जरुरी है लोगों के लिए कुछ लोग इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं।

सरकार को इस दर्शन भवन को या दर्शनीय स्थान को फिर से रेनोवेट करके अच्छी तरीके से सजाना चाहिए।

एक तरफ का पूरी तरीके से जाम लेकिन एक कतार में खड़ा है। बिहार में लोग ऐसे एक कतार में खड़े कही नहीं होते है। जहाँ जगह मिलता है वहीं घुसा देते हैं |